एक डॉक्टर का चैम्बर दिख रहा है। जहां पे बेड के ऊपर एक पेशंट लेटा हुआ है।

तलाब की तरफ जा रहे देख के लग रहा की मगरमछ --

प्लेटफॉर्म मे कोई किसी एक भीं आदमी नहीं दिखाई दे रहा है।

ये देख के तो लग रहा है कि किसी का शादी वगेरा चल रहा है। इसलिए इतना सजाया गया है।

एम् पार्क बहुत छोटा है।

एक समुन्दर दिख रहा है। बड़ा सा समुन्दर है। ये समुंदर के ऊपर सिर्फ एक ही लांच दिखाई दे रहा है। बट अंदर किसी को भी नही दिखाई दे रहा है।

और समुन्दर बहोत बड़ा है। पानी बहोत साफ़ सूत सुत्र है।